इस नांव से जा रहे है और एक जो पगड़ी बांधकर नांव को चला रहे है और अ ये लोग नाव से बैठ के जा --

यहाँ पे एक इंडियन रेलवे है और ट्रेन है जो म्म उसके सामने एक पूल म्म पोल है।

हा और हम्म और कभी स्टोर बहुत बड़ा --

यहाँ पर झरना से पानी बह रही है और बहुत सारा पेड़ पौधा है और बड़े पत्थर भी है।